ऊपर आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ ये एक बहुत बड़ा मंदिर टाइप का बना हुआ है यहां पर की चारों तरफ काफी मोटे-मोटे खंबे लगे हुए हैं।

इसके पीछे की तरफ काफी सारे पहाड़ और बहुत सारी झाड़ियां और पेड़ लगे हुए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं।

वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह एक बहुत बड़ा टूरिस्ट एरिया बना हुआ है जहां पर की यह एक बहुत बड़ा गार्डन में सामने की तरफ बुद्ध जी की मूर्ति रखी हुई है जो की गोल्डन कलर की है।

वहा पर आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ यह एक बहुत बड़ी चर्ज बनी हुई है जहां की यह इस चर्च के अंदर का एरिया है जहां पर की बहुत बड़ा मंदिर टाइप का रखा हुआ है ।

यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह बहुत बड़ा खुला मंदिर सा बना हुआ है जो कि काफी सारी पुरानी चट्टानों के बीचों-बीच में बनाया गया है।

यहां पर यह बहुत बड़ी चट्टानें बनी हुई है जोकि काफी पुरानी दे रही है इनको फाड़कर उनके नीचे की तरफ--

इसमे बहुत बडे गेट लगे हुए हैं जिनमें भी प्लस बने हुए हैं इनकी ऊपर की तरफ भी प्लस बने हुए हैं और यहां एक बालकनी भी है।